इसमें अच्छे अच्छे इंसान आते हैं।

बहुत अच्छा ओर खूबसूरत दिख रहा है और उनकी सीढ़ी में भी टाइल्स लगे हुए हैं।

और इस बिल्डिंग बहोत खूबसूरत और प्यारे दिख रहे है।

इस रोड में ए चर्च जो दिख रहे है बहुत खूबशूरत दिख रहा है।

ये एक एक गार्डन है यहां कुछ चेयर पड़े हुए हैं एक डस्टबिन के डब्बे भी दिख रहे हैं।

हाईवे नेशनल भी दिख रहे हैं कुछ गाड़ियां भी साइड से जा रहे हैं।

और एक आदमी नीचे खड़ा हुआ है झरने के नीचे--

और बहुत खूबसूरत दुकान है इसकी जो--

एक चिकन का पीस भी दिख रहा हैं।

यहां बहुत सारे कपड़े मिलते है। यहां बहुत सारे इंसान डिस्काउंट के लिए बहुत--

इसके राउंड राउंड और इस इस बिल्डिंग की खूबसूरती बहुत अच्छा--

यहां पर ये आपको अच्छे अच्छे वाशिंग मशीन --

आप एक बार आ के देखिए इस ऑफिस में जो--

जो बाहर से बहुत अच्छा से पार्किंग दिया है।

और उस तरफ एक टाटा एस_बी है।

यहां बहोत सारे नहाने के लिए आते हैं।

ये एक कोचिंग सेंटर है जिसके सामने एक एल_इ_डी से बच्चे को पढ़ाया जाता है।

ये एक खानें की टेबल है जिसमें खाने खाके सब चले गए हैं और जूठे प्लेट को अपने--

और इस स्कूल के बाहर में एक गेट लगा हुआ है।

और एक बोर्ड भी लगा हुआ है स्कूल में ताले बंद हैं और बाहर सब खड़े--

और ये सजा हुआ बैलून है।

चेयर के ऊपर चढ़ रहे उतर रहे हैं।

ये एक रेस्टोरेंट है यहां पे बहुत सारे इंसान आ के बैठे हैं।

ये अलमारी में और एक टी_वी भी लगा--

और तीनों जन अपने अपने हाथ मिला रहे हैं।

पीछे में एक चेयर भी लगा हुआ है एक टेबल भी है।

यहां बहुत जैन राशन लेने के लिए आते हैं जाते हैं।

हमें बहुत अच्छा लग रहे हैं।